लगा दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर छोटा सा पौधा पेड़ का भी उगा हुआ जो की अब थोड़ा बड़ा ही हो चुका है खुला आसमान है पानी हरिया हरिया नजर आ लगा दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे मौजूद है। यहाँ पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर पीले रंग का छाता है।

काम करता नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमे एक दीवार दिखाई दे रही है जिसके चारों ओर दरमियान में मूर्तियां अलग-अलग रखी हुई हैं यहाँ पर एक महिला की मूर्ति है बैठे हुए।

इस चित्र में हम देख सकते है की यहां पर हमें बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है। अगर यहां पर कोई भी इंसान--